मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार
इस वर्ष की गर्मी शायद ही हम भूल पाएँगे
लेकिन वर्षा की प्रतीक्षा हो रही है
आज जब मैं आप से बात कर रहा हूँ तब रमज़ान का पवित्र महीना प्रारम्भ हो चुका है
रमज़ान के पवित्र महीने के आगमन पर मैं भारत और विश्वभर के लोगों को विशेष करके मुस्लिम समुदाय को इस पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ
रमज़ान में प्रेयर स्पिरिचुअलिटी और चैरिटी को काफी महत्व दिया जाता है
हम हिन्दुस्तानी बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी परंपरा निर्माण की कि आज भारत इस बात का गर्व कर सकता है हम सवासौ करोड़ देशवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी सम्प्रदाय भारत में मौजूद हैं
ये ऐसा देश है जो ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग भी और ईश्वर को नकारने वाले लोग भी मूर्ति पूजा करने वाले भी और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले भी हर प्रकार की विचारधारा हर प्रकार की पूजा पद्धति हर प्रकार की परंपरा हम लोगों ने एक साथ जीने की कला आत्मसात की है
और आखिरकार धर्म हो सम्प्रदाय हो विचारधारा हो परंपरा हो हमें यही सन्देश देते हैं शान्ति एकता और सद्भावना का
ये रमज़ान का पवित्र महीना शान्ति एकता और सद्भावना के इस मार्ग को आगे बढ़ाने में ज़रूर सहायक होगा
मैं फिर एक बार सबको शुभकामनाएं देता हूँ
पिछली बार जब मैं मन की बात कर रहा था
तो मैंने एक शब्द प्रयोग किया था कि और खासकरके नौजवानों को कहा था कुछ नया करें कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए नये अनुभव लें और यही तो उम्र होती है ज़िन्दगी को इस प्रकार से जीना थोड़ा रिस्क लेना कठिनाइयों को न्योता देना
मुझे खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया
व्यक्तिगत रूप से मुझे अपनी बात बताने का उत्साह सबने दिखाया
मैं हर चीज़ को तो पढ़ नहीं पाया हूँ हर किसी के सन्देश को सुन भी नहीं पाया हूँ इतने ढ़ेर सारी चीज़ें आई हैं
लेकिन मैंने सरसरी नज़र से भी जो देखा किसी ने संगीत सीखने का प्रयास किया है कोई नये वाद्य पर हाथ आज़मा रहा है कुछ लोग यू ट्यूब का उपयोग करते हुए नयी चीज़ें सीखने का प्रयास कर रहे हैं नयी भाषा सीखने का प्रयास कर रहे हैं
कुछ लोग कुकिंग सीख रहे हैं कुछ नृत्य सीख रहे हैं कुछ ड्रामा सीख रहे हैं कुछ लोगों ने तो लिखा है कि हमने अब कविताएँ लिखना शुरू की हैं
प्रकृति को जानना जीना समझना उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं
मुझे बहुत ही आनंद हुआ और मैं एक फ़ोन कॉल तो आपको भी सुनाना चाहूँगा
दीक्षा कात्याल बोल रही हूँ
मेरी पढ़ने की आदत लगभग छूट ही चुकी थी इसलिए इन छुट्टियों में मैंने पढ़ने की ठानी
जब मैंने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना शुरू किया तब मैंने अनुभव किया कि भारत को आजादी दिलाने में कितना संघर्ष करना पड़ा है कितना बलिदान देना पड़ा है कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलों में वर्षों बिताए
मैं भगत सिंह जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया उससे काफी प्रेरित हुई हूँ इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि इस विषय में आप आज की पीढ़ी को कुछ सन्देश दें
मुझे खुशी है कि युवापीढ़ी हमारे इतिहास को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को इस देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को उनके विषय में जानने में रूचि रख रही है
अनगिनत महापुरुष जिन्होंने जवानी जेलों में खपा दी कई नौजवान फांसी के तख़्त पर चढ़ गए
क्या कुछ नहीं झेला और तभी तो आज हम आज़ाद हिन्दुस्तान में सांस ले रहे हैं
एक बात हमने देखी होगी कि आज़ादी के आन्दोलन में जिनजिन महापुरुषों ने जेलों में समय बिताया उन्होंने लेखन का अध्ययन का बहुत बड़ा काम किया और उनकी लेखनी ने भी भारत की आज़ादी को बल दिया
बहुत वर्षों पहले मैं अंडमान निकोबार गया था
सेलुलर जेल देखने गया था
आज वीर सावरकर जी की जन्म जयन्ती है
वीर सावरकर जी ने जेल में माज़ी जन्मठे किताब लिखी थी
कविताएँ लिखते थे दीवारों पर लिखते थे
छोटी सी कोठरी में उनको बंद कर दिया गया था
आज़ादी के दीवानों ने कैसी यातनाएँ झेली होंगी
जब सावरकर जी की माज़ी जन्मठे एक किताब मैंने पढ़ी और उसी से मुझे सेलुलर जेल देखने की प्रेरणा मिली थी
वहाँ एक लाइट एंड साउंड शो भी कार्यक्रम चलता है वो बड़ा ही प्रेरक है
हिन्दुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं था हिन्दुस्तान की कोई भाषा बोलने वाला नहीं होगा जो आज़ादी के लिए काले पानी की सजा भुगतता हुआ अंडमान की जेल में इस सेलुलर जेल में अपनी जवानी न खपाई हो
हर भाषा बोलने वाले हर प्रांत के हर पीढ़ी के लोगों ने यातनाएँ झेली थी
आज वीर सावरकर जी की जन्म जयन्ती है
मैं देश की युवापीढ़ी को ज़रूर कहूँगा कि हमें जो आज़ादी मिली है उसकी कैसी यातना लोगों ने झेली थी कितने कष्ट झेले थे अगर हम सेलुलर जेल जाकर देखें काला पानी क्यों कहा जाता था जाने के बाद ही पता चलता है
आप भी कभी मौका मिले तो एक प्रकार से हमारी आज़ादी की जंग के तीर्थ क्षेत्र हैं ज़रूर जाना चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियों 5 जून महीने का पहला सोमवार है
वैसे तो सब कुछ सामान्य है लेकिन 5 जून एक विशेष दिवस है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है और इस वर्ष उन ने इसका थीम रखा है कनेक्टिंग पियोपल टो नेचर
दूसरे शब्दों में कहें तो बैक टो बेसिक्स और नेचर से कनेक्ट का मतलब क्या है मेरी दृष्टि से मतलब है ख़ुद से जुड़ना अपने आप से कनेक्ट होना
नेचर से कनेक्ट का मतलब है बेटर प्लैनेट को नर्चर करना
और इस बात को महात्मा गाँधी से ज़्यादा अच्छे से कौन बता सकता है
महात्मा गाँधी जी कई बार कहते थे ओने मस्ट केयर अबाउट आ वर्ल्ड ओने विल नोट सी अर्थात् हम जो दुनिया नहीं देखेंगे हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसकी भी चिंता करें हम उसकी भी केयर करें
प्रकृति की एक ताक़त होती है आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत थक करके आए हो और एक गिलास भर पानी अगर मुहँ पर छिड़क दें तो कैसी फ्रेशनेस आ जाती है
बहुत थक करके आए हो कमरे की खिड़कियाँ खोल दें दरवाज़ा खोल दें ताज़ा हवा की सांस ले लें एक नयी चेतना आती है
जिन पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है जब उन पंच महाभूतों से संपर्क आता है तो अपने आप हमारे शरीर में एक नयी चेतना प्रकट होती है एक नयी ऊर्जा प्रकट होती है
ये हम सबने अनुभव किया है लेकिन हम उसको रजिस्टर नहीं करते हैं हम उसको एक धागे में एक सूत्र में जोड़ते नहीं हैं
इसके बाद आप ज़रूर देखना कि आपको जबजब प्राकृतिक अवस्था से संपर्क आता होगा आपके अन्दर एक नयी चेतना उभरती होगी और इसलिए 5 जून का प्रकृति के साथ जुड़ने का वैश्विक अभियान हमारा स्वयं का भी अभियान बनना चाहिये
पर्यावरण की रक्षा हमारे पूर्वजों ने की उसका कुछ लाभ हमें मिल रहा है
अगर हम रक्षा करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा
वेदों में पृथ्वी और पर्यावरण को शक्ति का मूल माना गया है
हमारे वेदों में इसका वर्णन मिलता है
और अथर्ववेद तो पूरी तरह एक प्रकार से पर्यावरण का सबसे बड़ा दिशानिर्देशक ग्रंथ है और हज़ारों साल पहले लिखा गया है
हमारे यहाँ कहा गया है माता भूमिः पुत्रो अहम् पृथिव्याः
वेदों में कहा गया है कि हम में जो प्यूरिटी है वह हमारी पृथ्वी के कारण है
धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र हैं
अगर हम भगवान् बुद्ध को याद करें तो एक बात ज़रूर उजागर होती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण तीनों पेड़ के नीचे हुआ था
हमारे देश में भी अनेक ऐसे त्योहार अनेक ऐसी पूजापद्धति पढ़ेलिखे लोग हों अनपढ़ हो शहरी हो ग्रामीण हो आदिवासी समाज हो प्रकृति की पूजा प्रकृति के प्रति प्रेम एक सहज समाज जीवन का हिस्सा है लेकिन हमें उसे आधुनिक शब्दों में आधुनिक तर्कों के साथ संजोने की ज़रूरत है
इन दिनों मुझे राज्यों से ख़बरें आती रहती हैं
क़रीबक़रीब सभी राज्यों में वर्षा आते ही वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा अभियान चलता है
करोड़ों की तादात में पौधे लगाये जाते हैं
स्कूल के बच्चों को भी जोड़ा जाता है समाजसेवी संगठन जुड़ते हैं न्गोस जुड़ते हैं सरकार स्वयं इनिशिएटिव लेती है
हम भी इस बार इस वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण के इस काम को बढ़ावा दें योगदान दें
मेरे प्यारे देशवासियों 21 जून अब दुनिया के लिये 21 जून जानापहचाना दिन बन गया है
विश्व योग दिवस के रूप में पूरा विश्व इसे मनाता है
बहुत कम समय में 21 जून का ये विश्व योग दिवस हर कोने में फ़ैल चुका है लोगों को जोड़ रहा है
एक तरफ़ विश्व में बिखराव की अनेक ताक़तें अपना विकृत चेहरा दिखा रही हैं ऐसे समय में विश्व को भारत की एक बहुत बड़ी देन है
योग के द्वारा विश्व को एक सूत्र में हम जोड़ चुके हैं
जैसे योग शरीर मन बुद्धि और आत्मा को जोड़ता है वैसे आज योग विश्व को भी जोड़ रहा है
आज जीवनशैली के कारण आपाधापी के कारण बढ़ती हुई ज़िम्मेवारियों के कारण तनाव से मुक्त जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है
और ये बात देखने में आई छोटीछोटी आयु में भी ये स्थिति पहुँच चुकी है
अनापशनाप दवाइयाँ लेते जाना और दिन गुज़ारते जाना ऐसी घड़ी में तनावमुक्त जीवन जीने के लिए योग की भूमिका अहम है
योग वेलनेस और फिटनेस दोनों की गारंटी है
योग सिर्फ व्यायाम नहीं है
तन से मन से शरीर से विचारों से आचार से स्वस्थता की एक अंतर्यात्रा कैसे चले उस अंतर्यात्रा को अनुभव करना है तो योग के माध्यम से संभव है
अभी दो दिन पहले ही मैंने योग दिवस को लेकर के विश्व की सभी सरकारों को सभी नेताओं को चिट्ठी लिखी है
पिछले वर्ष मैंने योग से संबंधित कुछ स्पर्धाओं की घोषणा की है कुछ इनामों की घोषणा की है
धीरेधीरे उस दिशा में काम आगे बढ़ेगा
मुझे एक सुझाव आया है और ये मौलिक सुझाव देने वालों का मैं अभिनंदन करता हूँ
बड़ा ही इंटरेस्टिंग सुझाव दिया है
उन्होंने कहा कि ये तीसरा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे कहा कि आप अपील करें कि इस बार तीसरा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही परिवार की तीन पीढ़ी एक साथ योग करे
दादादादी हो या नानानानी हो मातापिता हो बेटेबेटी हो तीनों पीढ़ी एक साथ योग करें और उसकी तस्वीर अपलोड करें
कल आज और कल एक ऐसा सुभग संयोग होगा कि योग को एक नया आयाम मिलेगा
मैं इस सुझाव के लिए धन्यवाद करता हूँ और मुझे भी लगता है कि जैसे हम लोगों ने सेल्फी विथ डॉगटर का अभियान चलाया था और एक बड़ा ही रोचक अनुभव आया था
ये तीन पीढ़ी की तस्वीर योगा करती हुई तस्वीर ज़रूर देश और दुनिया के लिए कौतुक जगाएगी
आप ज़रूर NarendraModiApp पर माइगोव पर तीन पीढ़ी जहाँजहाँ योग करती हो तीनों पीढ़ी के लोग एक साथ मुझे तस्वीर भेजें
कल आज और कल की ये तस्वीर होगी जो सुहाने कल की गारंटी होगी
मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ
अभी अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के लिये क़रीब तीन सप्ताह हमारे पास हैं
आज ही प्रैक्टिस में लग जाइए
मैं 01 जून से ट्विटर पर डेली योग के संबंध में कुछनकुछ पोस्ट करूँगा और लगातार 21 जून तक पोस्ट करता रहूँगा आप से शेयर करूँगा
आप भी तीन सप्ताह लगातार योग के विषय को प्रचारित करिए प्रसारित करिए लोगों को जोड़िए
एक प्रकार से ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का आंदोलन ही है
मैं निमंत्रित करता हूँ आप सब को इसमें जुड़ने के लिए
जब से आप लोगों ने मुझे प्रधान सेवक के रूप में कार्य की ज़िम्मेदारी दी है और लाल किले पर से जब पहली 15 अगस्त थी मेरी मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला था
स्वच्छता के संबंध में मैंने बात कही थी
तब से लेकर के आज तक हिंदुस्तान के अलगअलग भागों में मेरा प्रवास होता है और मैंने देखा है कि कुछ लोग बारीकी से मोदी क्या करते हैं मोदी कहाँ जाते हैं मोदी ने क्याक्या किया बराबर फोलो करते हैं
क्योंकि मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोन कॉल आया और मैंने भी शायद इस प्रकार से चीज़ को सोचा नहीं था लेकिन इस बात को उन्होंने जो पकड़ी इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ
ये फोन कॉल से आपको भी ध्यान में आएगा
प्रणाम मोदी जी मैं नैना मुंबई से
मोदी जी tव
पर और सोशल मीडिया में आज कल मैं हमेशा देखती हूँ आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग साफ़सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं
मुंबई हो या सूरत आपके आह्वान पर लोगों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता को एक मिशन के रूप में अपनाया है
बड़े तो बड़े बच्चों में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता आई है
कई बार उन्हें सड़क पर बड़ों को गंदगी फैलाते हुए टोकते हुए देखा है
काशी के घाटों से जो आपने स्वच्छता की एक मुहिम शुरू की थी वो आपकी प्रेरणा से एक आंदोलन का रूप ले चुकी है
आपकी बात सही है कि मैं जहाँजहाँ जाता हूँ
वहाँ सरकारी मशीनरी तो सफाई का काम करती है लेकिन इन दिनों समाज में भी एक सफाई का उत्सव बन जाता है
मेरे जाने के पाँच दिन पहले सात दिन पहले दस दिन पहले काफी मात्रा में सफाई के कार्यक्रम होते हैं
मीडिया भी उसको बड़ा प्राधान्य देता है
अभी मैं कुछ दिन पहले कच्छ गया था गुजरात में
बहुत बड़ा सफाई अभियान चला वहाँ
मैंने भी इसको जोड़ कर के नहीं देखा था
लेकिन जब ये फोन कॉल आया तो मैं भी सोचने लगा और मैंने देखा कि हाँ ये बात सही है
आप कल्पना कर सकते हैं मुझे कितना आनंद होता है इस बात को जानकर के और देश भी इन चीज़ों को कैसे बढ़िया ढंग से नोटिस कर रहा है
मेरे लिए इससे बढ़कर के क्या खुशी होगी कि मेरी यात्रा से भी स्वच्छता को जोड़ दिया गया है
प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बाकी जो तैयारियाँ होने की आदत होगीहोगी लेकिन स्वच्छता प्रमुख बात होगी
ये अपने आप में किसी भी स्वच्छताप्रेमी के लिए आनंदायक है प्रेरक है
मैं इस स्वच्छता के काम को बल देने वाले सभी को बधाई देता हूँ
किसी ने मुझे एक सुझाव दिया
वैसे वो बड़ा मज़ाकिया सुझाव है
मैं नहीं जानता हूँ मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा
मोदी जी अब आप प्रवास तय करते समय जो भी प्रवास माँगे उनको कहो कि भई अगर मुझे बुलाना है तो स्वच्छता का स्तर कैसा होगा कितना टन कूड़ाकचरा आप मुझे भेंट करोगे उसके आधार पर मैं अपना प्रवास तय करूँ
आईडीईए बहुत अच्छा है लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा
लेकिन ये बात सही है कि ये मूवमेंट तो बनना चाहिए कि और चीजें भेंटसौगात में देने की बजाय अच्छा ही होगा कि हम भेंटसौगात में इतना टन कूड़ाकचरा सफाई कर के दे देंगें
कितने लोगों को हम बीमार होने से बचाएँगे
कितना बड़ा मानवता का काम होगा
एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो कूड़ाकचरा है इसको हम वास्ते न मानें वो वेल्थ है एक रिसोर्स है
इसे सिर्फ गार्बेज के रूप में न देखें
एक बार इस कूड़ेकचरे को भी हम वेल्थ मानना शुरू करेंगें तो वास्ते मैनेजमेंट के कई नएनए तरीके हमारे सामने आयेंगे
स्टार्टअप में जुड़े हुए नौजवान भी नईनई योजनाएँ लेकर के आएंगे
नएनए इक्विपमेंट लेकर कर के आएँ
भारत सरकार ने राज्य सरकारों की मदद के साथ शहरों के जनप्रतिनिधियों की मदद के द्वारा वास्ते मैनेजमेंट का एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान शुरू करना तय किया है
5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देश के करीब 4 हज़ार नगरों में सोलिड वास्ते लिक्विड वास्ते इसको कलेक्ट करने के लिए उस प्रकार के साधन उपलब्ध होने वाले हैं
दो प्रकार के कूड़ेदान उपलब्ध होंगे एक ग्रीन कलर का दूसरा ब्लू कलर का
दो प्रकार के वास्ते निकलते हैं एक लिक्विड वास्ते होता है और एक ड्राय वास्ते होता है
अगर हम डिसिप्लिन फोलो करें इन चार हज़ार नगरों में ये जो कूड़ेदान रखे जाने वाले हैं
सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालें और गीला कचरा हरे कूड़ेदान में डालें
जैसे किचेन का जो वास्ते निकलता है सागसब्जियों के छिलके हों बचा हुआ भोजन हो अंडे के छिलके हों पेड़पौधों के पत्ते आदि हों ये सारे गीले वास्ते हैं और उसको हरे कूड़ेदान में डालें
ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो खेत में काम आती हैं
अगर खेत का रंग हरा इतना याद रखोगे तो हरे कूड़ेदान में क्या डालना है वो याद रह जाएगा
और दूसरा कूड़ाकचरा ये है जैसे रद्दीकाग़ज है गत्ता है लोहा है कांच है कपड़ा है प्लास्टिक है पॉलीथीन है टूटे हुए डब्बे हैं रबड़ है धातुएँ है कई चीज़े होंगी ये सारी चीज़ें एक प्रकार से सूखा कचरा है
जिसको मशीन में डाल करके रिसाइकिल करना पड़ता है
वैसे वो कभी उपयोग नहीं आ सकता
उसको नीले कूड़ेदान में डालना है
मुझे विश्वास है कि हम एक कल्चर डेवलप करेंगे
स्वच्छता की ओर हर बार नये कदम हमें उठाते ही जाना है
तब जा करके हम गाँधी जी जिन सपनों को देखते थे वो स्वच्छता वाला सपना हम पूरा कर पाएँगे
आज मुझे गर्व के साथ एक बात का ज़िक्र करना है एक इंसान भी अगर मन में ठान ले तो कितना बड़ा जन आन्दोलन खड़ा कर सकता है
स्वच्छता का काम ऐसा ही है
पिछले दिनों आपके कान पर एक ख़बर आई होगी
मुंबई में गंदा माने जाने वाला वर्सोवा बीच आज एक साफ़सुथरा सुंदर वर्सोवा बीच बन गया
ये अचानक नहीं हुआ है
करीब 8090 सप्ताह तक नागरिकों ने लगातार मेहनत करके वर्सोवा बीच का कायापलट कर दिया
हज़ारों टन कूड़ाकचरा निकाला गया और तब जा करके आज वर्सोवा बीच साफ़ और सुंदर बन गया
और इसकी सारी जिम्मेवारी वर्सोवा रेसिडेंस वॉलंटियर वीआरवी उन्होंने संभाली थी
एक सज्जन श्रीमान् अफरोज़ शाह अक्टूबर 2015 से वे जीजान से इसमें जुट गए
धीरेधीरे ये कारवाँ बढ़ता चला गया
जनआन्दोलन में बदल गया
और इस काम के लिए श्रीमान् अफरोज़ शाह को यूनाइटेड नेशंस एनवायर्नमेंट प्रोग्राम यूनेप उन्होंने बहुत बड़ा अवार्ड दिया
चैम्पियंस ओएफ थे अर्थ अवार्ड ये पाने वाले वो पहले भारतीय बने
मैं श्रीमान् अफरोज़ शाह को बधाई देता हूँ इस आंदोलन को बधाई देता हूँ
और जिस प्रकार से लोकसंग्रह की तरह उन्होंने सारे इलाके के लोगों को जोड़ा और जन आंदोलन में परिवर्तित किया ये अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण है
भाइयो और बहनों आज मैं एक और ख़ुशी की बात भी आप से बताना चाहता हूँ
स्वच्छ भारत अभियान के सन्दर्भ में जम्मूकश्मीर का रियासी ब्लॉक
मुझे बताया गया कि रियासी ब्लॉक ओपन डेफेकेशन फ्री खुले में शौच से मुक्त हुआ है
मैं रियासी ब्लॉक के सभी नागरिकों को वहाँ के प्रशासकों को जम्मूकश्मीर ने एक उत्तम उदाहरण दिया है
इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ
और मुझे बताया गया इस पूरे मूवमेंट को सबसे ज्यादा लीड किया है जम्मूकश्मीर के उस इलाके की महिलाओं ने
उन्होंने जागरूकता फ़ैलाने के लिए ख़ुद ने मशाल यात्राएँ निकाली
घरघर गलीगली जाकर के लोगों को उन्होंने प्रेरित किया
उन माँबहनों को भी मैं ह्रदय से अभिनन्दन करता हूँ वहाँ बैठे हुए प्रशासकों का भी अभिनन्दन करता हूँ कि जिन्होंने जम्मूकश्मीर की धरती पर एक ब्लॉक को ओपन डेफेकेशन फ्री बनाकर के एक उत्तम शुरुआत की है
मेरे प्यारे देशवासियों पिछले 15 दिन महीने से लगातार अख़बार हो टीवीचैनल हो सोशल मीडिया हो वर्तमान सरकार के 3 वर्ष का लेखाजोखा चल रहा है
3 साल पूर्व आपने मुझे प्रधान सेवक का दायित्व दिया था
ढ़ेर सारे सर्वे हुए हैं ढ़ेर सारे ओपिनियन पोल आए हैं
मैं इस सारी प्रक्रिया को बहुत ही हेल्थी साइन्स के रूप में देखता हूँ
हर कसौटी पर इस 3 साल के कार्यकाल को कसा गया है
समाज के हर तबके के लोगों ने उसका एनालिसिस किया है
और लोकतंत्र में एक उत्तम प्रक्रिया है
और मेरा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में सरकारों को जवाबदेह होना चाहिए जनताजनार्दन को अपने काम का हिसाब देना चाहिए
मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने समय निकाल करके हमारे काम की गहराई से विवेचना की कहीं सराहना हुई कहीं समर्थन आया कहीं कमियाँ निकाली गई मैं इन सब बातों का बहुत महत्व समझता हूँ
मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट फीडबैक दिये हैं
जो त्रुटिया होती हैं कमियाँ होती हैं वो भी जब उजागर होती हैं तो उससे भी सुधार करने का अवसर मिलता है
बात अच्छी हो कम अच्छी हो बुरी हो जो भी हो उसमें से ही सीखना है और उसी के सहारे आगे बढ़ना है
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लोकतंत्र को बल देता है
एक जागरूक राष्ट्र के लिए एक चैतन्य पूर्ण राष्ट्र के लिए ये मंथन बहुत ही आवश्यक होता है
मेरे प्यारे देशवासियों मैं भी आप की तरह एक सामान्य नागरिक हूँ और एक सामान्य नागरिक के नाते अच्छीबुरी हर चीज़ का प्रभाव मुझ पर भी वैसा ही होता है जैसा किसी भी सामान्य नागरिक के मन पर होता है
मन की बात कोई उसको एक तरफ़ा संवाद के रूप में देखता है कुछ लोग उसको राजनीतिक दृष्टि से टीकाटिप्पणी भी करते हैं
लेकिन इतने लम्बे तज़ुर्बे के बाद मैं अनुभव करता हूँ मैंने जब मन की बात शुरू की तो मैंने भी सोचा नहीं था
मन की बात इस कार्यक्रम ने मुझे हिन्दुस्तान के हर परिवार का एक सदस्य बना दिया है
ऐसा लगता है जैसे मैं परिवार के बीच में ही घर में बैठ करके घर की बातें करता हूँ
और ऐसे सैकड़ो परिवार हैं जिन्होंने मुझे ये बातें लिख करके भी भेजी हैं
जैसा मैंने कहा कि एक सामान्य मानव के रूप में मेरे मन में जो प्रभाव होता है फिर दो दिन पूर्व राष्ट्रपति भवन में आदरणीय राष्ट्रपति जी आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आदरणीय स्पीकर महोदया सबने मन की बात की एक एनालिटिकल बुक का समारोह किया
एक व्यक्ति के नाते सामान्य नागरिक के नाते ये घटना मुझे बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली है
मैं राष्ट्रपति जी का उपराष्ट्रपति जी का स्पीकर महोदया का आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाल करके इतने वरिष्ठ पद पर बैठे हुए लोगों ने मन की बात को ये अहमियत दी
एक प्रकार से अपने आप में मन की बात को एक नया आयाम दे दिया
हमारे कुछ मित्र इस मन की बात की किताब पर जब काम कर रहे थे तो मेरे से भी कभी चर्चा की थी
और कुछ समय पहले जब इसकी बात चर्चा में आई तो मैं हैरान था
अबु धाबी में रहने वाले एक आर्टिस्ट अक़बर साहब के नाम से जाने जाते हैं
अक़बर साहब ने सामने से प्रस्ताव रखा कि मन की बात में जिन विषयों पर चर्चा हुई है वो अपनी कला के माध्यम से उसका स्केच तैयार करके देना चाहते हैं और एक भी रूपया लिये बिना अपना प्यार जताने के लिए अक़बर साहब ने मन की बातों को कला का रूप दे दिया
मैं अक़बर साहब का आभारी हूँ
मेरे प्यारे देशवासियों अगली बार जब मिलेंगे तब तक तो देश के हर कोने में बारिश आ चुकी होगी मौसम बदल गया होगा परीक्षाओं के परिणाम आ चुके होंगे नये सिरे से विद्याजीवन का आरंभ होने वाला होगा और बरसात आते ही एक नई खुशनुमा एक नई महक एक नई सुगंध
आइए हम सब इस माहौल में प्रकृति के प्रति प्यार करते हुए आगे बढ़ें
मेरी आप सब को बहुतबहुत शुभकामनाएँ